और मुझे यहां पर कुछ लोग भी दिख रहे हैं।

और उस कैफे में बहोत सारी चेयर्स लगी हुई दिख रही है।

मुझे यहां पर एक मकान बना हुआ दिख रहा है।

जिसमें एक चैनर गेट लगा हुआ दिख रहा है।

और मुझे उसके पीछे जिम दिख रहा है।

मुझे यहां सामने बहोत सारे अपार्टमेंट बिल्डिंग टाइप के रूप में बने हुए दिख रहे हैं।

मुझे यहां कुछ चित्रकारी बनी हुई दिख रही है।

और मुझे सामने एक सड़क नजर आ रही है।

और मुझे सामने की तरफ एक गेट लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

और मुझे सामने की तरफ एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ नजर आ रहा है।

आइस्क्रीम पार्लर की शॉप नजर आ रही है उस शॉप पर कांच का गेट नजर--

यह एक रेलवे प्लेटफार्म के सामने ऊपर जाती चिड़िया दिख रही--